टेबल लाए लगाए गए हैं और उस टेबल के दोनों टेबल पे तीन तीन कुर्सियां चार चार कुर्सियां भी लगाई गयी हैं।

नीचे में दरी बिछाया हुआ है और छोटे छोटे बल्ब भी लगाया है जिसमें हर किसी का बल्ब जलता है।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

उसके पीछे एक ब्लू कलर का बिल्डिंग है जो दो मंजिला बनाया गया है।

उसके बाहर में राइट साइड में एक सोलर है लेफ्ट साइड में कुछ सामानें रखी गई हैं जैसे वो बोतल है और डिब्बे रखे गए हैं तार है।

उसके पीछे भी एक बिल्डिंग है।

यहां पे सीढ़ियां बनाई गई है जो ब्लैक कलर की हैं।

यहां पे सामने में एक कुकर है एक चेयर है।